यह पिक्चर एक स्टेट बैंक के बाहर की पिक्चर है इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है स्टेट बैंक के अंदर एक महिला खड़ी हुई है।

एक रिक्शा खड़ी हुई है एक रिक्शा में एक बुजुर्ग किसी को बैठाने की कोशिश कर रहा है एक बंदा रिक्शा को चला रहा है जो पीछे की तरफ देख रहा है।

रेस्टोरेंट के ऊ ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर फूड ट्रैक लिखा हुआ है और उसके ऊपर--

के बराबर में कुर्सियां लगी हुई है और कुछ सोफे भी लगे हुए है।

उसके पीछे कुछ स्टेयर्स दिखाई दे रही है और उस पिक्चर में एक घड़ी भी दिखाई दे रही है।

दीवार पर एक वॉच लगी हुई हैं और एक दीवार पर दो वेंटीलेटर वेंटिलेशन --

और रूम के अंदर दो गन लटकी है रूम की छत में ल लाइटे लगी हुई है।

और मशीन के ऑपरेटिंग मशीन के बराबर में एक डस्टबिन लगा हुआ है रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ कुड़ा रखा पड़ा--

ओर नेस्कैफे वाइट पेंट से लिखा हुआ है इस पे रेड कलर का पेंट हुआ है कप के ऊपर और ऊपर अंदर के तरफ--